अल्लाह को दिखाया गया है और इसमें जो है भगवान की मूर्ति को स्थापना किया गया है। खंडहर बनाया गया है। लोग आते है इस खंडहर में ये घुमने जरुर जाते है एक बार।

सरकार जो इग्जाम लेती हैं वो अब कंप्यूटर से इग्जाम लेती हैं इसलिए यहां जो है एक साइबर कैफे है और इस साइबर कैफे में कंप्यूटर की तैयारी --